चैयर रखी हुई है बहुत बड़ा-सा हाल है व्हाइट कलर से पेंट है गोल्डेन पिंक ग्रीन तरह से सजाया गया है पंखा लग रखा है ऊपर--

और एक व्यक्ति के हाथ मे हेलमेट है और बगल से सीढ़ी दिखाई दे रही है जिसका रेलिंग दिख रहा है सिल्वर का--